रखा हुआ है और पांच लड़के हैं व्हाइट कलर का सभी लोग पहने हुए हैं बहोत ही प्यारा फ्लावर्स लगा हुआ है फुल--

येलो कलर में बिल्ली बना हुआ है पिंक कलर में--

लाइटिंग कितना प्यारा डेकोरेट किए गए है।

यहा पे समान भी रखे हुए इंडेक्सन खाना बनाने--

बट यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इतनी प्यारी इतनी साफ-सुथरा इतनी सुंदर सजा हुआ है।

फाइल भी रखा हुआ है बॉटल भी रखा हुआ चेयर है ब्लैक कलर का --

ये कोई कैफे है ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ कोई पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है बट --

और राइट साइड पे पूरे गमले रखे हुएं--

पानी दिखाई दे रहा है और यहाँ का पानी जो है भूरे रंग की है।

यहां पे बहोत सारी कलरफुल लाइट मोमबत्ती ले के--

दो लड़के भी दिखाई दे रहे है बैठे हुए।

यहां पे गेट लगा हुआ है ब्लैक कलर का और बहोत बड़ी इमारत ऐसा दिखाई दे रहा है।

लाइटिंग लगा हुआ है वाइट कलर का।

ये खदान जैसे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे पेट्रोल टंकी दिखाई दे रहे हैं पेट्रोल पे--

स्कूटी पे सवार है वो भी दिखाई दे रहा है।

इतने अच्छे से रखा हुआ है ना--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

रनिंग का सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं रनिंग करने के लिए।